हॉस्पिटल यह सब जैसा शायद कुछ यहाँ पे ।

हाँ ये कोविड के दौरान का है मतलब यह फोटो लोग मास्क लगाए हुए है।

मार्केट का ये है --